जिसमें तीन लड़कियां डांस कर रही है।

और उसमें काले रंग का फर्श बिछा हुआ है।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

और यहां पे दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।

और यहां पर ए_सी भी लग रही है।

और इसके पीछे एक घर भी है।

और यहां पे एक रास्ता भी जा रहा है और यहां पे रंग बिरंगी पर्दे लग रहे हैं।

और यहां पे बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

और यहां पे एक आदमी भी खड़े हुए है।

ये एक बी एंड बी का बोर्ड लग रहा है।

और यहाँ पे काउंटर लकड़ी का लग रहा है।

और यहां पे फूल रखे हुए है।

और यहां पे शीशे की रेलिंग लगाई है।

और एक यहां पे बोड भी दिखाई दे रहा है।

और उसमें एक कॉफी कलर का बोर्ड लग रहा है।

और यहां पे एक जीना भी जा रहा है।

और यहां पे एक सैमसंग का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यह एक फर्नीचर की दुकान है।

जिसके ऊपर कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

और यहां पे एक भालू भी उतर रहा है।

यह एक ट्रक खड़ा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है और यहा पे बहुत सारे है।

और यहां पे लोहे की ग्रिल्ला भी लग रही है।

और यहां पे एक लकड़ी का बोर्ड लग रहा है जिसपे वो--

और यहां पे ऑरेंज कलर का पर्दा भी लग रहा है।

और यहां पे बहुत से आदमी भी खड़े हुए है।

और यहां पे एक साइकिल भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और उसे पे आदमी भी चल रहे हैं।

और यहां पे फरश बीछ रहा है।